मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात हमेशा की तरह मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी एक प्रतीक्षा रहती है
इस बार भी मैंने देखा कि बहुत सारे पत्र कमेंट्स फोन कॉल मिले हैं ढ़ेर सारी कहानियां हैं सुझाव हैं प्रेरणा हैंहर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है और कहना भी चाहता है एक जज़्बा महसूस होता है और इन सभी में बहुत कुछ है जो मैं समेटना चाहूँगा लेकिन समय की सीमा है इसलिये समेट भी नहीं पाता हूँ
ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बहुत कसौटी कर रहे हैं
फिर भी आप ही की बातों को इस मन की बात के धागे में पिरोकरके फिर से एक बार आपको बांटना चाहता हूँ
आपको याद होगा पिछली बार मैंने प्रेमचंद जी की कहानियों की एक पुस्तक के बारे में चर्चा की थी और हमने तय किया था कि जो भी बुक पढ़ें उसके बारे में कुछ बातें NarendraModiApp के माध्यम से सबके साथ शेयर करें
मैं देख रहा था कि बड़ी संख्या में लोगों ने अनेक प्रकार के पुस्तकों की जानकारी साझा की हैं
मुझे अच्छा लगा कि लोग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इतिहास संस्कृतिbusiness जीवन चरित्र ऐसे कई विषयों पर लिखी गयी किताबों पर और उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं
कुछ लोगों ने तो मुझे यह भी सलाह दी है कि मैं कई और पुस्तकों के बारे में बात करूँ
ठीक है मैं जरुर कुछ और पुस्तकों के बारे में आपसे बात करूँगा
लेकिन एक बात मुझे स्वीकारनी होगी कि अब मैं बहुत ज्यादा किताब पढ़ने में समय नहीं दे पा रहा हूँ
लेकिन एक फायदा जरुर हुआ है कि आप लोग जो लिख करके भेजते हैं तो कई किताबों के विषय में मुझे जानने का जरुर अवसर मिल रहा है
लेकिन ये जो पिछले एक महीने का अनुभव है उससे मुझे लगता कि इसको हमने आगे बढ़ाना है
क्यों ना हम NarendraModiApp पर एक परमेनेंट bookएस कॉर्नर ही बना दें और जब भी हम नई किताब पढ़ें उसके बारे में वहाँ लिखें चर्चा करें और आप हमारे इस bookएस कॉर्नर के लिए कोई अच्छा सा नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं
मैं चाहता हूँ कि यह bookएस कॉर्नर पाठकों और लेखकों के लिए एक सक्रिय मंच बन जाये
आप पढ़तेलिखते रहें और मन की बात के सारे साथियों के साथ साझा भी करते रहें
साथियो ऐसा लगता है कि जल संरक्षण मन की बात में जब मैंने इस बात को स्पर्श किया था लेकिन शायद आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे कहने से पहले भी जल संरक्षण ये आपके दिल को छूने वाला विषय थासामान्य मानवी की पसंदीदा विषय था
और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि पानी के विषय में इन दिनों हिन्दुस्तान के दिलों को झकझोर दिया है
जल संरक्षण को लेकर देशभर में अनेक विद प्रभावी प्रयास चल रहे हैं
लोगों ने पारंपरिक तौरतरीकों के बारे में जानकारियाँ तो शेयर की हैं
मीडिया ने जल संरक्षण पर कई इनोवेटिव कैम्पेन शुरू किये हैं
सरकार होNGOs हो युद्ध स्तर पर कुछनाकुछ कर रहे हैं
सामूहिकता का सामर्थ्य देखकरमन को बहुत अच्छा लग रहा है बहुत संतोष हो रहा है
जैसे झारखण्ड में रांची से कुछ दूर ओरमांझी प्रखण्ड के आरा केरम गाँव में वहाँ के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौंसला दिखाया है वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है
ग्रामीणों ने श्रम दान करके पहाड़ से बहते झरने कोएक निश्चित दिशा देने का काम किया
वो भी शुद्ध देसी तरीका
इससे ना केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है
ग्रामीणों का ये श्रम दान अब पूरे गाँव के लिए जीवन दान से कम नहीं है
आप सबको यह जानकर भी बहुत खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जलनीति वाटर पॉलिसी तैयार की है
मैं वहाँ की सरकार को बधाई देता हूँ
हरियाणा में उन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें कम पानी की जरुरत होती है और किसान का भी कोई नुकसान नहीं होता है
मैं हरियाणा सरकार को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के साथ संवाद करके उन्हें परम्परागत खेती से हटकर कम पानी वाली फसलों के लिए प्रेरित किया
अब तो त्योहारों का समय आ गया है
त्योहारों के अवसर पर कई मेले भी लगते हैं
जल संरक्षण के लिए क्यों ना इस मेलों का भी उपयोग करें
मेलों में समाज के हर वर्ग के लोग पहुँचते हैं
इन मेलों में पानी बचाने का सन्देश हम बड़े ही प्रभावी ढंग से दे सकते हैं प्रदर्शनी लगा सकते हैं नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं उत्सवों के साथसाथ जल संरक्षण का सन्देश बहुत आसानी से हम पहुँचा सकते हैं
साथियो जीवन में कुछ बातें हमें उत्साह से भर देती हैं और विशेष रूप से बच्चों की उपलब्धियां उनके कारनामेहम सबको नई ऊर्जा देते हैं और इसलिए आज मुझे कुछ बच्चों के बारे में बात करने का मन करता है और ये बच्चे हैं निधि बाईपोटु मोनीष जोशी देवांशी रावत तनुष जैन हर्ष देवधरकर अनंत तिवारी प्रीति नाग अथर्व देशमुख अरोन्यतेश गांगुली और हृतिक अलामंदा
मैं इनके बारे में जो बताऊंगा उससे आप भी गर्व और जोश से भर जायेंगे
हम सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे पूरी दुनिया डरती है
ऐसा लगता है मृत्यु द्वार पर खड़ी है लेकिन इन सभी दस बच्चों ने अपनी ज़िंदगी की जंग में ना केवल कैंसर को कैंसर जैसी घातक बीमारी को पराजित किया है बल्कि अपने कारनामे से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है
खेलों में हम अक्सर देखते हैं कि खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतने या मैडल हांसिल करने के बाद चैम्पियन बनते हैं लेकिन यह एक दुर्लभ अवसर रहा जहाँ ये लोग खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले ही चैम्पियन थे और वो भी ज़िंदगी की जंग के चैम्पियन
दरअसल इसी महीने मोस्को में वर्ल्ड childrenएस विनर्स गेम्स का आयोजन हुआ
यह एक ऐसा अनोखा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है जिसमें यंग कैंसर सर्वाइवर्स यानी जो लोग अपने जीवन में कैंसर से लड़कर बाहर निकले हैं वे ही हिस्सा लेते हैं
इस प्रतियोगिता में शूटिंग चेस स्विमिंग रनिंग फुटबॉल और टेबल टेनिस जैसी स्पर्द्धाओं का आयोजन किया गया
हमारे देश के इन सभी दस चैम्पियंस ने इस टूर्नामेंट में मैडल जीते
इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने तो एक से ज्यादा खेलों में मैडल जीते
मेरे प्यारे देशवासियोमुझे पूरा विश्वास है कि आपको आसमान के भी पार अंतरिक्ष में भारत की सफलता के बारे में जरुर गर्व हुआ होगा चन्द्रयांत्वो
राजस्थान के जोधपुर से संजीव हरीपुरा कोलकाता से महेंद्र कुमार डागा तेलंगाना से पी अरविन्द राव ऐसे अनेक देशभर के अलगअलग भागों से कई लोगों ने मुझे NarendraModiApp और MyGovपर लिखा है और उन्होंने मन की बात में चन्द्रयांत्वो के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है
दरअसलस्पेस की दृष्टि से 2019 भारत के लिए बहुत अच्छा साल रहा है
हमारे वैज्ञानिकों ने मार्च मेंअसत लॉन्च किया था और उसके बाद चन्द्रयांत्वो चुनाव की आपाधापी में उस समय असत जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी
जबकि हमने असत मिसाइल से महज़ तीन मिनट में तीनसौ किलोमीटर दूर सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल की
यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना और अब 22 जुलाई को पूरे देश ने गर्व के साथ देखा कि कैसे चन्द्रयांत्वो ने श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाए
Chandrayaantwoके प्रक्षेपण की तस्वीरों ने देशवासियों को गौरव और जोश से प्रसन्नता से भर दिया
त्वो यह मिशन कई मायनों में विशेष है
चन्द्रयांत्वो चाँद के बारे में हमारी समझ को और भी स्पष्ट करेगा
इससे हमें चाँद के बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारियाँ मिल सकेंगी लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि Chandrayaantwoसे मुझे कौनसी दो बड़ी सीख मिली तो मैं कहूँगा ये दो सीख हैं फैथ और फियरलेसनेस यानी विश्वास और निर्भीकता
हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए
आपको ये जानकार ख़ुशी होगी कि चंद्र्यान्त्वो पूरी तरह से भारतीय रंग में ढ़लाहै
यह हर्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है
पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है
इस मिशन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बात नएनए क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने की हो इनोवेटिव ज़ील की हो तो हमारे वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ हैं विश्वस्तरीय हैं
दूसरा महत्वपूर्ण पाठ यह है कि किसी भी व्यवधान से घबराना नहीं चाहिए
जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में दिनरात एक करके सारे टेक्निकल इश्यूज को ठीक कर चंद्र्यान्त्वो को लॉन्च किया वह अपने आप में अभूतपूर्व है
वैज्ञानिकों की इस महान तपस्या को पूरी दुनिया ने देखा
इस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए और व्यवधान के बावजूद भी पहुँचने का समय उन्होंने बदला नहीं इस बात का भी बहुतों को आश्चर्य है
हमें अपने जीवन में भी टेम्पोरेरी सेट बैक्स यानी अस्थाई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन हमेशा याद रखिए इससे पार पाने का सामर्थ्य भी हमारे भीतर ही होता है
मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद्र्यान्त्वो अभियान देश के युवाओं को साइंस और इनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा
आखिरकार विज्ञान ही तो विकास का मार्ग है
अब हमें बेसब्री से सितम्बर महीने का इंतजार है जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की लैंडिंग होगी
आज मन की बात के माध्यम से मैं देश के विद्यार्थी दोस्तों के साथ युवा साथियों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प प्रतियोगिता के बारे में कॉम्पिटिशन के बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ और देश के युवकयुवतियों को निमंत्रित करता हूँ एक क्विज कॉम्पिटिशन
अंतरिक्ष से जुड़ी जिज्ञासाएं भारत का स्पेस मिशन साइंस और टेक्नोलॉजी इस क्विज कॉम्पिटिशन के मुख्य विषय होंगे जैसे कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए क्याक्या करना पड़ता हैसैटेलाइट को कैसे ओर्बिट में स्थापित किया जाता है और सैटेलाइट से हम क्याक्या जानकारियाँ प्राप्त करते हैंअसत क्या होता है बहुत सारी बातें हैं
माइगोव वेबसाइट पर एक अगस्त को प्रतियोगिता की डिटेल्स दी जाएगी
मैं युवा साथियों को विद्यार्थियों को अनुरोध करता हूँ कि इस क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लें और अपनी हिस्सेदारी से इसे दिलचस्प रोचक और यादगार बनाएँ
मैं स्कूलों से अभिभावकों से उत्साही आचार्यों और शिक्षकों से विशेष आग्रह करता हूँ कि वे अपने स्कूल को विजयी बनाने के लिए भरसक मेहनत करें
सभी विद्यार्थियों को इसमें जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें और सबसे रोमांचक बात यह है कि हर राज्य से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को भारत सरकार अपने खर्च पर श्रीहरिकोटा लेकर जाएगी और सितम्बर में उन्हें उस पल का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड कर रहा होगा
इन विजयी विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन की ऐतिहासिक घटना होगीलेकिन इसके लिए आपको क्विज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होगा सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे आपको विजयी होना होगा
साथियो मेरा ये सुझाव आपको जरुर अच्छा लगा होगा है ना मजेदार अवसर तो हम क्विज में भाग लेना न भूलें और ज्यादासेज्यादा साथियों को भी प्रेरित करें
मेरे प्यारे देशवासियो आपने एक बात आब्जर्व करी होगी
हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है
पाँच साल पहले शुरू हुआ सफ़र आज जनजन की सहभागिता से स्वच्छता के नएनए मानदंड स्थापित कर रहा है
ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो एकसौ तीस करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताक़त है लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं
ये आंदोलन अब स्वच्छता से सुन्दरता की ओर बढ़ चला है
अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान् योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था
योगेश सैनी इंजीनियर हैं और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आएँ हैं
उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुन्दर बनाने का बीड़ा उठाया
उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की
स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों कोखूबसूरत पेंटिंग्स से सजानेसंवारने का काम किया
Over ब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गीझोपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से यह सिलसिला चल पड़ा
आपको याद होगा कि कुंभ के दौरान प्रयागराज को किस प्रकार स्ट्रीट पेंटिंग्स से सजाया गया था
मुझे पता चला भई योगेश सैनी ने और उनकी टीम ने उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी
रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इन्द्रधनुष बनते हैं उनका सन्देश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं
हमारे लिए बहुत जरुरी है कि वास्ते टो वेल्थ बनाने का कल्चर हमारे समाज में डेवलप हो
एक तरह से कहें तो हमें कचरे से कंचन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है
मेरे प्यारे देशवासियो पिछले दिनों माइगोव पर मैंने एक बड़ी ही दिलचस्प टिप्पणी पढ़ी
यह कमेंट जम्मूकश्मीर के शोपियां के रहने वाले भाई मुहम्मद असलम का था
उन्होंने लिखा मन की बात कार्यक्रम सुनना अच्छा लगता है
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने राज्य जम्मूकश्मीर में कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टो विलेज के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई
इस कार्यक्रम का आयोजन जून महीने में हुआ था
मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हर तीन महीने पर आयोजित किये जाने चाहिए
इसके साथ ही कार्यक्रम की ओनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए
मेरे विचार से यह अपनी तरह का ऐसा पहला कार्यक्रम था जिसमें जनता ने सरकार से सीधा संवाद किया
भाई मुहम्मद असलम जी ने ये जो सन्देश मुझे भेजा और उसको पढ़ने के बाद बैक टो विलेज प्रोग्राम के बारे में जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई और जब मैंने इसके बारे में विस्तार से जाना तो मुझे लगा कि पूरे देश को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए
कश्मीर के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ने को कितने बेताब हैं कितने उत्साही हैं यह इस कार्यक्रम से पता चलता है
इस कार्यक्रम में पहली बार बड़ेबड़े अधिकारी सीधे गांवो तक पहुँचे
जिन अधिकारियों को कभी गाँव वालों ने देखा तक नहीं था वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुँचे ताकि विकास के काम में आ रही बाधाओं को समझा जा सके समस्याओं को दूर किया जा सके
ये कार्यक्रम हफ्ते भर चला और राज्य की सभी लगभग साढ़े चार हजार पंचायतों में सरकारी अधिकारियों ने गाँव वालों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी
ये भी जाना कि उन तक सरकारी सेवाएँ पहुँचती भी हैं या नहीं
पंचायतों को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है उनकी सेवाएँ सामान्य मानवी के जीवन में क्या प्रभाव पैदा कर सकती हैं गाँव वालों ने भी खुलकर अपनी समस्याओं को बताया
साक्षरता सेक्स रेशियो स्वास्थ्य स्वच्छता जल संरक्षण बिजली पानी बालिकाओं की शिक्षा सीनियर सिटिजेन के प्रश्न ऐसे कई विषयों पर भी चर्चा हुई
साथियो ये कार्यक्रम कोई सरकारी खानापूर्ति नहीं थी कि अधिकारी दिन भर गाँव में घूमकर वापस लौट आएँ लेकिन इस बार अधिकारीयों ने दो दिन और एक रात पंचायत में ही बिताई
इससे उन्हें गाँव में समय व्यतीत करने का मौका मिला
हर किसी से मिलने का प्रयास किया
हर संस्थान तक पहुँचने की कोशिश की
इस कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई और चीजों को भी शामिल किया गया
खेलो इंडिया के तहत बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता कराई गई
वहीँ स्पोर्ट्स किट्स मनरेगा के जॉब कार्ड्स और SCST सर्टिफिकेट्स भी बांटे गए
Financial लिटरेसी कैम्प्स लगाए गए
Agriculture हॉर्टिकल्चर जैसे सरकारी विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई
एक प्रकार से ये आयोजन एक विकास उत्सव बन गया जनभागीदारी का उत्सव बन गया जनजागृति का उत्सव बन गया
कश्मीर के लोग विकास के इस उत्सव में खुलकर के भागीदार बने
खुशी की बात ये है कि बैक टो विलेज कार्यक्रम का आयोजन ऐसे दूरदराज के गाँवों में भी किया गया जहाँ पहुँचने में सरकारी अधिकारियों को दुर्गम रास्तों से होकर पहाड़ियों को चढ़तेचढ़ते कभीकभी एक दिन डेढ़ दिन पैदल यात्रा भी करनी पड़ी
ये अधिकारी उन सीमावर्ती पंचायतों तक भी पहुँचे जो हमेशा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के साए में रहते हैं
यही नहीं शोपियां पुलवामा कुलगाम और अनंतनाग जिले के अति संवेदनशील इलाके में भी अधिकारी बिना किसी भय के पहुँचे
कई अफसर तो अपने स्वागत से इतने अभिभूत हुए कि वे दो दिनों से अधिक समय तक गाँवों में रुके रहे
इन इलाकों में ग्राम सभाओं का आयोजन होना उसमें बड़ी संख्या में लोगों का भाग लेना और अपने लिएयोजनाएँ तैयार करना यह सब बहुत ही सुखद है
नया संकल्प नया जोश और शानदार नतीजे
ऐसे कार्यक्रम और उसमें लोगों की भागीदारी ये बताती है कि कश्मीर के हमारे भाईबहन गुड गवर्नेंस चाहते हैं
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि विकास की शक्ति बमबंदूक की शक्ति पर हमेशा भारी पड़ती है
ये साफ है कि जो लोग विकास की राह में नफरत फैलाना चाहते हैं अवरोध पैदा करना चाहते हैं वो कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते
मेरे प्यारे देशवासियो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्रीमान दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे ने अपनी एक कविता में सावन माह की महिमा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की है
इस कविता में उन्होंने कहा है
होडिगे मडिगे आग्येद लग्ना
अदराग भूमि मग्ना
अर्थात बारिश की फुहार और पानी की धारा का बंधन अनोखा है और उसके सौंदर्य को देखकर पृथ्वी मग्न है
पूरे भारतवर्ष में अलगअलग संस्कृति और भाषाओं के लोग सावन के महीने को अपनेअपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं
इस मौसम में हम जब भी अपने आसपास देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली हो
चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है
इस पवित्र महीने में कई श्रद्धालु कांवड़ यात्रा और अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं जबकि कई लोग नियमित रूप से उपवास करते हैं और उत्सुकतापूर्वक जन्माष्टमी और नाग पंचमी जैसे त्योहारों का इंतजार करते हैं
इस दौरान ही भाईबहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन का त्योहार भी आता है
सावन महीने की जब बात हो रही है तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार अमरनाथ यात्रा में पिछले चार वर्षों में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं
1 जुलाई से अब तक तीन लाख से अधिक तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं
2015 में पूरे 60 दिनों तक तक चलने वाली इस यात्रा में जितने तीर्थयात्री शामिल हुए थे उससे अधिक इस बार सिर्फ 28 दिनों में शामिल हो चुके हैं
अमरनाथ यात्रा की सफलता के लिए मैं खासतौर पर जम्मूकश्मीर के लोगों और उनकी मेहमाननवाजी की भी प्रशंसा करना चाहता हूँ
जो लोग भी यात्रा से लौटकर आते हैं वे राज्य के लोगों की गर्मजोशी और अपनेपन की भावना के कायल हो जाते हैं
ये सारी चीज़ें भविष्य में पर्यटन के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली हैं
मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड में भी इस वर्ष जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से डेढ़ महीने के भीतर 8 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं
2013 में आई भीषण आपदा के बाद पहली बार इतनी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री वहाँ पहुंचें हैं
मेरी आप सभी से अपील है कि देश के उन हिस्सों में आप जरुर जाएं जिनकी खूबसूरती मानसून के दौरान देखते ही बनती है
अपने देश की इस खूबसूरती को देखने और अपने देश के लोगों के जज्बे को समझने के लिएtourism और यात्रा शायद इससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं हो सकता है
मेरी आप सभी को शुभकामना है कि सावन का यह सुंदर और जीवंत महीना आप सबमें नई ऊर्जा नई आशा और नई उम्मीदों का संचार करे
उसी प्रकार से अगस्त महीना भारत छोड़ो उसकी याद ले करके आता है
मैं चाहूँगा कि 15 अगस्त की कुछ विशेष तैयारी करें आप लोग
आजादी के इस पर्व को मनाने का नया तरीका ढूढें
जन भागीदारी बढ़ें
15 अगस्त लोकोत्सव कैसे बने जनोत्सव कैसे बने इसकी चिंता जरुर करें आप
दूसरी ओर यही वह समय है जब देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है
कई हिस्सों में देशवासी बाढ़ से प्रभावित हैं
बाढ़ से कई प्रकार के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं
बाढ़ के संकट में घिरे उन सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का काम बहुत तेज गति से कर रहा है
वैसे जब हम टीवी देखते हैं तो बारिश का एक ही पहलू दिखता है सब तरफ बाढ़ भरा हुआ पानी ट्रैफिक जाम
मानसून की दूसरी तस्वीर जिसमें आनंदित होता हुआ हमारा किसान चहकते पक्षी बहते झरने हरियाली की चादर ओढ़े धरती यह देखने के लिए तो आपको खुद ही परिवार के साथ बाहर निकलना पड़ेगा
बारिश ताजगी और खुशी यानी फ्रेशनेस और हैपीनेस दोनों ही अपने साथ लाती है
मेरी कामना है कि यह मानसून आप सबको लगातार खुशियों से भरता रहे
आप सभी स्वस्थ रहें
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात कहाँ शुरू करें कहाँ रुकें बड़ा मुश्किल काम लगता है लेकिन आखिर समय की सीमा होती है
एक महीने के इंतजार के बाद फिर आऊंगा
फिर मिलूँगा
महीने भर आप मुझे बहुत कुछ बातें बताना
मैं आने वाली मन की बात में उसको जोड़ने का प्रयास करूँगा और मेरे युवा साथियों फिर से याद कराता हूँ
आप क्विज कॉम्पिटिशन का मौका मत छोड़िये
आप श्रीहरिकोटा जाने का जो अवसर मिलने वाला है इसको किसी भी हालत में जाने मत देना
आप सबको बहुतबहुत धन्यवाद